एक बोहोत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर स्टील के बोहोत सारी चीजें लगी हुई हैं।

स्टेज है जहाँ पर खूब सारे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ।

और कुछ बच्चे बड़े-बड़े चार्ट पेपर्स और कलर के साथ क्रिएटिविटी आर्ट कर रहे हैं और --

एक क्लासरूम है जहां पर क्लासरूम के आगे एक कॉरिडोर है।

जो कि लैंप के लाइट के नीचे एक कटोरा में पानी लेकर कुछ काम करते हुए दिख रही है और वो कटोरा हरे रंग के टेबल पे है।

बच्चे अपना-अपना स्टाल लगाकर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जहां पर टीचर्स भी हैं।

एक रूम है जहा पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिख रहे हैं।

बांग्लादेश में कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर एक वाइट कलर की बिल्डिंग हैं जहां पे अंदर लोग जा रहे हैं।

घर बन रहा है। बहोत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक लड़का --